यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रोपर्टिज विंडो के बारे में है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
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि प्रोपर्टिज विंडो क्या है
प्रोपर्टिज विंडो में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स पैनल मॉडिफायर्स पैनल और ऑब्जेक्ट दाता पैनल क्या है
प्रोपर्टिज विंडो में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स पैनल मॉडिफायर्स पैनल और ऑब्जेक्ट दाता पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं
मैं मानता हूँ कि आपको ब्लेंडर इन्टरफ़ेस के बेसिक एलिमेंट्स पहले से ही पता हैं
यदि नहीं तो कृपया ब्लेंडर पर हमारा पहला ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफ़ेस के बेसिक डिस्क्रिप्शन देखें
प्रोपर्टिज विंडो हमारी स्क्रीन के दाहिनी ओर स्थित है
हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में पहले से ही प्रोपर्टिज विंडो के पहले चार पैनल्स और उनकी सेटिंग्स देख चुके हैं
प्रोपर्टिज विंडो में अगले पैनल्स देखते हैं
पहले हमें अपनी प्रोपर्टिज विंडो का आकार बेहतर देखने और समझने के लिए बदलना होगा
प्रोपर्टिज विंडो के बाएँ किनारे पर बायाँ क्लिक करें पकड़कर रखें और बाईं ओर ड्रैग करें
अब हम प्रोपर्टिज विंडो में ऑप्शन्स अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं
ब्लेंडर विंडोज का आकार कैसे बदलें इसे सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल ब्लेंडर में विंडो टाइप्स कैसे बदलें इसे देखें
प्रोपर्टिज विंडो की ऊपरी रो पर जाएँ
चैन आइकन पर बायाँ क्लिक करें
यह ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स पैनल है
एड कंस्ट्रेंट पर बायाँ क्लिक करें
इस मेन्यू में विभिन्न ऑब्जेक्ट कन्स्ट्रेन्ट्स की सूची है
यहाँ कन्स्ट्रेन्ट्स के तीन मुख्य प्रकार हैं - ट्रांसफार्म ट्रैकिंग और रिलेशनशिप
कॉपी लोकेशन कन्स्ट्रेन्ट का उपयोग एक ऑब्जेक्ट का स्थान कॉपी करने और उसे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है
3डी व्यू पर जाएँ
लैम्प को चुनने के लिए इसपर राइट क्लिक करें
ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स पैनल पर वापस जाएँ
एड कंस्ट्रेंट पर बायाँ क्लिक करें
ट्रान्सफॉर्म के नीचे कॉपी लोकेशन चुनें
एड कंस्ट्रेंट मेन्यू बार के नीचे एक नया पैनल प्रदर्शित होता है
इस पैनल में कॉपी लोकेशन कन्स्ट्रेन्ट्स के लिए सेटिंग्स हैं
क्या आप कॉपी लोकेशन पैनल में बाईं ओर ओरेंज क्यूब के साथ इस सफ़ेद बार को देख रहे हैं
यह टार्गेट बार है
यहाँ हम हमारे टार्गेट ऑब्जेक्ट का नाम जोड़ते हैं
टार्गेट बार पर बायाँ क्लिक करें
सूची से क्यूब चुनें
कॉपी लोकेशन कन्स्ट्रेन्ट्स क्यूब के स्थान निर्देशांक को कॉपी करता है और उसे लैंप पर लागू करता है
फलस्वरूप लैंप क्यूब के स्थान पर स्थानांतरित होता है
कॉपी लोकेशन पैनल के ऊपरी दाएँ कोने में क्रॉस आइकन पर बायाँ क्लिक करें
कन्स्ट्रेन्ट बंद हो चुका है
लैंप अपने मूल स्थान पर वापस आता है
अतः इस तरह से एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट काम करता है
हम बाद के ट्यूटोरियल्स में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट का उपयोग कई बार करेंगे
अभी के लिए प्रोपर्टिज विंडो में अगले पैनल पर जाएँ
3डी व्यू पर जाएँ
क्यूब चुनने के लिए राइट क्लिक करें
प्रोपर्टिज विंडो के ऊपरी रो के अगले आइकन पर बायाँ क्लिक करें
यह मॉडिफायर्स पैनल है
मॉडिफायर ऑब्जेक्ट को उसके मूल गुणों को बदले बिना विरुपित करता है
मैं दिखाता हूँ
मॉडिफायर्स पैनल पर वापस जाएँ
एड मॉडिफायर पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ तीन मुख्य प्रकार के मॉडिफायर्स हैं - जनरेट डिफॉर्म और सिमुलेट
मेन्यू के निचले बाएँ कोने में सबडिविजन सरफेस पर बायाँ क्लिक करें
क्यूब एक विरुपित गेंद में बदलता है
एड मॉडिफायर मेन्यू बार के नीचे एक नया पैनल प्रदर्शित होता है
यह पैनल सब डिविजन सरफ़ेस मॉडिफायर के लिए सेटिंग्स दर्शाता है
व्यू 1 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 3 टाइप करें और एन्टर बटन दबाएँ
अब क्यूब एक गेद या गोले की तरह दिख रहा है
हम सब डिविजन सरफ़ेस मॉडिफायर के बारे में विस्तार से बाद के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
सब डिविजन सरफ़ेस मॉडिफायर पैनल के ऊपरी दाएँ कोने में क्रॉस आइकन पर क्लिक करें
मॉडिफायर बंद हो गया है
क्यूब वापस अपने मूल आकार में बदल गया है
अतः मॉडिफायर क्यूब के मूल गुणों को नहीं बदलता है
हम अन्य मॉडिफायर्स के बारे में विस्तार से बाद के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
प्रोपर्टिज विंडो के ऊपरी रो पर इनवर्टेड ट्रायंगल आइकन पर बायाँ क्लिक करें
यह ऑब्जेक्ट दाता पैनल है
चुनित कोनों का एक समूह सेट करने के लिए वर्टेक्स ग्रुप्स का उपयोग किया जाता है
वर्टेक्स ग्रुप्स का प्रयोग कैसे करें यह हम अधिक एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
शेप कीज़ का उपयोग एडिट मोड में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए किया जाता है
क्या आप शेप कीज़ बॉक्स के सबसे ऊपरी दाईं ओर प्लस सिग्न देख रहे हैं
इसका उपयोग ऑब्जेक्ट में नई शेप के जोड़ने के लिए किया जाता है
प्लस सिग्न पर बायाँ क्लिक करें
पहली की बेसिस है
यह की ऑब्जेक्ट का मूल आकार सेव करती है जिसे हम एनिमेट करने जा रहे हैं
इसलिए हम इस की को मॉडिफाइ नहीं कर सकते हैं
अन्य की जोड़ने के लिए प्लस सिग्न पर पुनः बायाँ क्लिक करें
के 1 पहली की है जिसे मॉडिफाइ किया जा सकता है
3 डी व्यू पर जाएँ
एडिट मोड में प्रवेश करने के लिए अपने कीबोर्ड पर tab दबाएँ
क्यूब नापने के लिए एस दबाएँ
अपना माउस ड्रैग करें
माप की पुष्टि के लिए बायाँ क्लिक करें
ऑब्जेक्ट मोड पर वापस जाने के लिए tab दबाएँ
क्यूब अपने मूल आकार में आ गया है
तो स्केलिंग में क्या हुआ
जिसे हमने एडिट मोड में किया
ऑब्जेक्ट डेटा पैनल में शेप कीज़ बॉक्स पर वापस जाएँ
के 1 सक्रिय की है और ब्लू में चिन्हांकित है
दाईँ ओर पर शेप की की वेल्यू है
यह वेल्यू नीचे मॉडिफाइ कर सकते हैं
वेल्यू 0000 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 1 टाइप करें और एन्टर दबाएँ
क्यूब का आकार अब बढ़ गया है
जैसे हम आगे बढेंगे हम अधिक शेप कीज़ जोड़ते और क्यूब मॉडिफाइ करते रहेंगे
ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की इस श्रृंखला में एनिमेट करते हुए आप मुझे अक्सर शेप की का प्रयोग करते हुए देखेंगे
अगली सेटिंग उव टेक्सचर है
इसका उपयोग एक ऑब्जेक्ट में जुड़े हुए टेक्चर को मोडिफाइ करने के लिए किया जाता है
हम इसे विस्तार से बाद के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
अब आप आगे बढ़ सकते हैं और एक नई फ़ाइल बना सकते हैं
कॉपी लोकेशन कॉन्स्ट्रेन्ट का उपयोग करके लैंप पर क्यूब का लोकेशन कॉपी करें
सब डिविजन सरफ़ेस मॉडिफायर का उपयोग करके क्यूब को स्पेयर में बदलें और शेप कीज़ का उपयोग करके क्यूब एनिमेट करें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद